और सामने एक बोर्ड लगया गया है जिसका नाम है स्टार एयर ।

अ सामने नीचे बहोत सारे बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं।

और दीवाल का कलर भी बिल्कुल पानी जैसा ही है।

यह एक पहाड़ है जहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और बोहोत सारे पोल भी दिखाई दे रहे हैं।

अ ऊपर पंडाल बिछाया गया है। सामने एक गाय खड़ी है।

यह एक झरना जो ऊंचाई से गिरता हुआ दिखाई दे रहा --

आजू बाजू बहुत सारे अह पौधे है तथा पेड़ है।

यहां एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है माधव गार्डन रेस्टोरेंट ।

जहां पे काठियावाड़ी चाइनीस साउथ इंडियन फूड लिखा गया है।

अ होटल के सामने दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक तस्वीर जिसमें एक नी पीले रंग का ब्रिज दिखाई दे सकता है।

यह एक असमान का तस्वीर है सामने एक झरना ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

आसमान का रंग नीला है और आसमान बादलों से घिरा हुआ है।

सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का पोशाक पहना हुआ है।

जो लाल रंग से लिखा गया है सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा--

यह एक पीले रंग की बिल्डिंग आ खड़ी हुई है।

बाजू में बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई देखी जा सकती है।

यह एक नीला रंग का नदी दिखाई दे रहा है।

बाजू में थैली के अंदर एक पानी का बॉटल दिखाई दे रहा है।

ऊपर से पानी गिरता हुआ नीचे पत्थर को छू रहा है।

बाजू में एक औरत ने हरे कलर का साड़ी पहना है और दीवाल का रंग सफेद है।

यह एक मूर्ति है जो गौतम बुद्धा की है।

यह एक मंदिर है मंदिर सफेद रंग का है।

यहां घास पूछ एरिया है जहां सामने गाय चराई होते हुए दिखाई दे रही है।

यह एक होटल है सामने नीले रंग का पोशाक पहना हुआ एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

दरवाजे कांच के हैं और सोफा हरा रंग का हैं।

यह एक झरना है झरने में अ बहोत सारा पानी ऊपर से दीवाल छूता हुआ नीचे आ रहा है।

ऑदल कम हो चुके हैं सामने एक व्यक्ति है जो सफेद रंग का पोशाक तथा सफेद रंग का टोपी पेहना हुआ है।

यहां एक भारत के अ तिरंगे जैसा एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है।

बाजू में कॉलेज के अ बोर्ड लगे हुए है उसके ठीक पीछे बहोत सारे पेड़ है।

सफेद कलर की सामने बिल्डिंग है आजू बाजू पेड़ भी है और आसमान नीला है।

बाजू में दीवार का रंग सफेद रंग है और बाजू में एक दुकान और है।

और एक पोल भी खड़ा है जो लाइट लैंप वाला है शाम का समय हो रहा है।

यहां पे अलग अलग रंग के केक दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक झरने की है जो झरना ऊपर से दीवाल को छूता हुआ नीचे आ रहा है।

ऑरेंज कलर का पोशाक पहने हुए एक औरत दिखाई दे रही है।

यह एक झरना हैं जो ऊपर से गिर रहा है लोग नीचे से इसका नजारा ले रहें हैं।

और बहो पीछे बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है।

वामन नीले रंग से लिखा गया है और उसके ऊपर मिठाइयां की बहोत सारी तस्वीरें भी दिखाई दी जा सकती है।